बहुत पानी दिखाई दे रहा है और नीचे घास नज़र आ रहा है। इधर एक पेड़ दिखाई --

ये रेल का डब्बा दिखाई दे रहा है जिसमें काले कलर का और उ उ फरोजी कलर दिख रहा है।